यह एक हार्डवेयर की दुकान दिखाई दे रही--

यह एक होटल दिखाई दे रहा है होटल में काफी सारी चेयर रखी हुई--

दो लड़कियों के हाथ में कैंडल भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर खेत दिखाई दे रहा है।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

लकड़ी की टेबल भी दिखाई दे रही है।

यहां पर काफी सारे चम्मच दिखाई दे रहे हैं।

और नीचे काफी सारे लाइटर भी दिखाई दे रहे है।

साइड में चाकू भी दिखाई दे रहा है।